यह सुबह ए बनारस इसमें काफी दो कलाकार बैठे हैं जो की संगीत कलाकार हैं। अ यह गायक भी लग रहे हैं।

ये कोई कलाकार है जो की तबला है तबले की ले तबले बज तबला भी बजा रहा है।

ये किसी शॉप का फोटो है। जिसमें स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है हाँ जैसे कि फुटबॉल है अ बेडमिंटन बैट है अ बॉल है क्रिकेट बॉल दिख रही है इसमें।

अंगूर हैल्दी चीज है हमारी बॉडी के लिए बोहोत अच्छी चीज है अंगूर। अंगूर खाना चाहिए।

इसमें खजूर के पेड़ दिख रहे हैं खजूर के और भी अन्य पेड़ भी हैं इसमें और भी कई तरह के पेड़ इसमें नजर आ रहे हैं जो कि बोहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं हरा-भरा पार्क है।

ये ई एस.बी.आई बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जोकि बहुत बड़ा बैंक है।

ये पंजाब नेशनल बैंक है। ये भी पीछे भी आया था मैंने पीछे भी इस के बारे में बोला है।

पी.एन.बी. और यह किसी डॉक्टर का भी इसमें फलैक्स लगी हुई ऐड हुवा है इसमें डॉक्टर अनुराग टंडल डॉक्टर भी और इसमें बैंक भी है।

ये फेडरल बैंक है जिसमें इसके फेडरल का एटीएम भी है शायद और जो सामने इसमें कार खड़ी है मारुति सुजुकी की कार है।

जो कि बोहोत बड़ा है ज्यादा अच्छा भी है एरोप्लेन पे है एरोप्लेन है इसका नाम इसको एयरोप्लेन बोलते हैं जोकि वाइट और रेड कलर का है।

अ ये कोई नदी है। जिसके ऊपर पुल बनाया गया है। और पुल इसलिए बनाया जाता है की लोग आसानी से नदी के ऊपर से आना और जाना कर सके।

ये लोन वगैरह भी देते हैं बैंक आपको और ये काफी किसी घर के बराबर में बैंक लग रहा है। घर के नीचे बैंक लग रहा है। इसमें सामने कारें भी खड़ी हुई हैं।

एक ही दुकान है। इसमें बस और बाहर भी काफी अच्छा स्पेस है इसमें बोहत अच्छी दुकान है।